पिंक कलर का वॉलपेपर लगा हुआ है और एक मूर्ति है।

--और ग्रीन कलर का बिल्डिंग है ये और उसके साइड में एक बहुत बड़ी सी लाइट लगी हुई है बहुतबड़ी स्कूल ।

यह एक पुराना घर लग रहा है जो पूरी तरहा से टूट चुका है नीचे बहुत सारे पौधे लगे हुऐ हैं उसके पीछे बहुत पौधे हैं और यह पुराना घर लग --

चारों ओर हरि-हरि घासे है चारों ओर हरि-हरि पेड़ हरे-हरे पेड़ हैं।

आगे एक आयकर कार्यालय है जो कि रेड कलर की है और पीछे येलो कलर की बिल्डिंग है।

सामने व्हाइट कलर का एक स्कूल है | एक आगे एक ग्रिल ग्रीन कलर का बहुत सारे घास है उसके साइड बहुत सारे घर है वहाँ पर एक व्हाइट कलर का कार लगा हुआ है और चारों तरफ हरे-हरे पेड़ हैं ।

सामने तीन मूर्ति हैं जो ब्लैक कलर की हैं और पीछे बहुत सारे पेड़ हैं और पेड़ के नीचे पानी है।